यहाँ पर आस-पास काफी सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद आसमान भी नजर आ --

यहाँ पर काफी सारी लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं अ जोकि अह डांस कर्न करती हुई दिखाई दे रही थीं। अभी वो बैठी हुई हैं।

एक अम्म हॉल दिखाई दे रहा है। इस हॉल में काफी शारा शामान भी रखा हुआ है। यहाँ पर सफ़ेद कलर की लाइटिंग जल रही हैं। यहाँ पर वाइट कलर से पेंट किया गया है।

यह एक बहोत बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है इस मार्केट में काफी सारी बस भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हर तरफ हर प्रकार की डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पर एक फर्श बिछा हुआ है जो काफी प्रिंटेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक अंकल हैं ना व्हाइट कलर की ड्रेस पहने --